नांव के पास हमे दो व्यक्ती नज़र आ रहे है।

पर बहोत सारे पेड़ भी ऊगे हुए हैं।

सूरज ढलने को नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है।

एक मेकअप की शॉप हैं।

पीछे हमे एक सड़क भी दिख रही है।

देखने में यह दृश्य हमें किसी--

लख लख रंगों की लगी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य हमें किसी फंक्शन का दिखाया जा रहा है।

पार्क में हमें बहोत ऊंची ऊंची हरी भरी वृक्ष हरि हरि घास--

उस घर मे हमे क्रीम कलर का पेंट किया हुआ।

यह दृश्य हमें किसी दुकान का दिखाई दे रहा है।

जैसे कि टिप्स गम्स पेंसिल्स के बॉक्सेस और भी बहोत सारा सामान--

यहां जिम सिम्स भी हो सकती हैं।